आई.टी.आई. कॉलेज में मशीन को सिखाया जाता है।

ये बहुत सारे बच्चे यहाँ सिख रहे है उत्सुक हो कर के सबके चेहरे पर मुस्कान है और यह टीचर सीखा रहे है लाइब्रेरी टाइप तरह का है इसमें।

और इसको घेरा भी गया है बोहत अच्छे से इसको घेर के रखा गया है और यहाॅं जगह बोहत ही अच्छा लग --

कबड्डी या खेल कूद कुछ भी ऐसा अपने आपस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं।

एक आदमी पीछे से सपोर्ट कर रहा है एक आदमी चला रहा है आगे से उसका हैंडल वैगरह घुमा कर के।

मकैनिक है दो फोर व्हीलर लगा है इस फोर व्हीलर में कुछ खराबी है जो बनाने के लिए मकैनिक को जा रहा है।

और एक मकैनिक वहाँ बैठ कर कुछ कर भी रहा है फोर व्हीलर चारो तरफ से खोल दिया गया है।